और बीच में एक खंभा भी है।

यहाँ एक मंदिर है जिसके नीचे रेड कलर और ऊपर ब्लैक कलर रेड कलर का पेंट किया हुआ है इसके बगल में हरे-हरे पौधे भी हैं और लोहे का ग्रिल भी लगा हुआ है इसके सामने --